प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है जहां बहोत से लोग चलते दिखाई दे रहे हैं।

बहोत से बैनर्स लगे हुए हैं।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं आसमान--

बादलों वाला दिखाई दे रहा है.

यह कोई ढाबा दिखाई दे रहा है।

यह कोई होटल दिखाई दे रहा है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है.

जो एक ट्रैक्टर से अटैच है।

सामने एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है.

सामने एक छोटा सा रूम दिखाई दे रहा है.

बादलों का दृश्य दिखाई दे रहा है।

बैनर दिखाई दे रहा है.

यह एक कस्टमर सर्विस सेंटर दिखाई दे रहा है.

जिम का समान दिखाई दे रहा है।

लाल कलर का बैनर लगा हुआ दिखाई--

जहां एक स्टैचू बना दिखाई दे रहा है.

देवदार के पेड़ दिखाई दे रहे हैं इंसान दिखाई दे रहे हैं चलते हुए नजर आ रहे हैं।

चारों ओर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

का दृश्य दिख रहा है--

जहां पीछे एक इमारत बनी हुई हैं।

बहुत से खाने की चीजें दिखाई--

जहां बहुत से डब्बे दिखाई--

यहां कोई अंकल ठेले पर दिखाई दे रहे हैं।

दीपार पर बहुत बड़ा मिरर दिखाई दे रहा है.

और चटाइयों पर बच्चें योगा करते नजर आ रहे हैं।

सामने ग्रीन कलर की बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है.

यह एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है.

दे रहा है बलब दिखाई दे रहे हैं।

आपस में डिस्कशन करते नजर आ रहे हैं।

उसकी मरमत करता नजर आ रहा है जिसने चप्पल पहनी हुई है.

कुछ अन्य गाड़ियां बाइक दिखाई--

मैकेनिक ने ब्लू कलर की--